यहाँ पर जो है छब्बीस जनवरी की तैयारी हो रही है और ये बहुत ही अच्छे से झण्डा पहराने तैयारी की जा रही है और यहाँ पर झण्डा हर साल भारत छब्बीस जनवरी को ओ --

दो मिनट में आधा घंटा में एक घंटा में कितना भी दूर क्यों न हो तुरंत पहुंचा देते है इस फ्लाइट के माध्यम से बहुत जल्द ही लोग दूर का सफर कर पाते है।